यह पेट्रोल पंप की पिक है यहां एक बोलेरो --

जिसके बाहर एक बड़ा नीम का पेड़ लगा हुआ है उसके नीचे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

यह एक बुलेट शॉप है जो की --

पेड़ पौधे लगाई गए हैं गुलदस्तों से बाहर भी बड़ी बड़ी पेड़ दिखाई दे रहे हैं बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी बनाया गया है।

पीछे का पर्दा ग्रीन दिखाई दे रहा है उस पर कुछ पेड़ पौधों की ड्राइंग भी की गई है।

यहां माता जी पूजन की तैयारी हो रही है यहां पर एक टेंट लगा हुआ है जिसमें माता जी की मूर्ति रखी हुई है और साइड --

तीन साइड डेकोरेट की हुई है एक आदमी है जो कि स्टॉल में बैठा है और इसके पास एक लैपटॉप पड़ा है।

इसके आगे एक गाड़ी है इसकी गाड़ी के आगे एक बाइक है।

यह एक साइकिल शॉप है यहां पर एक लड़का साइकिल लिए खड़ा है।

ये एक पथरीला इलाका है यहां बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें है।